रूबी में अरिथ्मेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे
अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेटर प्रेसिडेन्स रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ मैं उबन्टु लिनक्स वर्जन 1204 रूबी 193 का उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कैसे करें160
आपको आईआरबी की जानकारी होनी आवश्यक है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं
रूबी के पास निम्न अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स हैं
ऐडीशन जैसे ab सब्ट्रैक्शन जैसे a ब
डिवीज़न जैसे aब
मल्टिप्लिकेशन जैसे ab मॉड्यूलस जैसे ab एक्सपोनेंट जैसे ab आईआरबी का उपयोग करके इन अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स का अभ्यास करें
एक साथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
आपके स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो दिखती है
टाइप करें आईआरबी और इंटरैक्टिव रूबी आरम्भ के लिए एंटर दबाएं
टाइप करें 10 प्लस 20 और एंटर दबाएं
एडिशन ऑपरेशन क्रियान्वित हुआ और परिणाम 30 प्रदर्शित हुआ है
इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन और मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन भी क्रियान्वित हो सकते हैं
अब डिवीज़न ऑपरेशन का अभ्यास करें
टाइप करें 10 स्लैश 4 और एंटर दबाएं
यहाँ आप देख सकते हैं कि परिणाम संक्षिप्त रूप में पूर्ण संख्या 2 के निकट आता है
अधिक अच्छे परिणाम के लिए हमें एक नंबर को फ्लोट की तरह व्यक्त करने की आवश्यकता है
टाइप करें 100 स्लैश 4 और एंटर दबाएं
अब हमें परिणाम 25 मिलता है
अब मॉड्यूलस ऑपरेटर का अभ्यास करते हैं
मॉड्यूलस ऑपरेटर आउटपुट में शेषफल देता है
टाइप करें 12 परसेंटेज साइन 5 और एंटर दबाएं
यहाँ 12 5 से डिवाइड हुआ है और शेष 2आया है
अब एक्सपोनेंट ऑपरेटर का अभ्यास करते हैं
2 के बाद दो बार ऐस्ट्रिस्क सिंबल और फिर 5 टाइप करें और एंटर दबाएं
इसका मतलब है कि 2 5 की पावर में आता है
अतः हमें आउटपुट 32 मिलता है
आगे अब ऑपरेटर प्रेसिडेन्स के बारे में सीखेंगे
जब मैथ्मेटिकल एक्सप्रेशंस में कुछ ऑपरेशंस होते हैं हर एक भाग मूल्यांकित होता है
और ऑपरेटर प्रेसिडेन्स नामक पूर्व निर्धारित अनुक्रम में विभाजित किया जाता है
इसका मतलब है कि सबसे उच्च वरीयता वाले ऑपरेटर सबसे पहले क्रियान्वित होते हैं
इसके बाद वरीयता अनुसार अगला ऑपरेटर आता है और आगे भी यही क्रम चलता है
यह स्लाइड सारे ऑपरेटर्स को उच्चतम प्रेसिडेन्स से निम्नतम में सूचीबद्ध करती है
उदाहरणस्वरूप 3 4 5 23 आता है 35 नहीं
एडिशन ऑपरेशन की अपेक्षा मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन को उच्च प्रेसिडेन्स दिया जाता है
और पहले क्रियान्वित किया जायेगा
इसीलिए पांच बार चार बीस आता है और फिर 3 20 में जुड़ता है तो आउटपुट 23 मिलता है
अब ऑपरेटर प्रेसिडेन्स पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल पर वापस जाएँ
आईआरबी कंसोल को क्लियर करने के लिए एकसाथ Ctrl और ल कीज़ दबाएं
अब टाइप करें 7 माइनस 2 इसे 3 से मल्टिप्लाई करें
और एंटर दबाएं
हमें उत्तर 1 मिलता है
यहाँ माइनस साइन की अपेक्षा ऐस्ट्रिस्क सिंबल उच्च प्राथमिकता रखता है
इसलिए पहले मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन क्रियान्वित हुआ फिर सब्ट्रैक्शन
एक अलग उदाहरण देखें
कोष्ठकों में टाइप करें 10 प्लस 2 स्लैश 4 और एंटर दबाएं
हमें उत्तर 3 मिलता है
इस स्थिति में डिवीज़न स्लैश की अपेक्षा में कोष्ठकों की उच्च प्राथमिकता है
इसलिए कोष्ठकों के अंदर ऑपरेशन जो एडिशन है पहले क्रियान्वित होता है
फिर डिवीज़न क्रियान्वित होता है
अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे
वापस स्लाइड्स पर आते हैं
रिलेशनल ऑपरेटर्स को कम्पैरिज़न ऑपरेटर्स भी कहते हैं
रिलेशनल ऑपरेटर्स उपयोग करने वाले एक्सप्रेशंस बूलियन वैल्यू देते हैं
रूबी में रिलेशन ऑपरेटर्स हैं इक्वल्स टो जैसे ab डॉट ईक्यूएल क्वेस्शन मार्क जैसे aeql160b 160 नोट इक्वल्स टो जैसे आ एक्सक्लेमेशन इक्वल ब लैस दैन से कम जैसे alt ब ग्रेटर दैन से अधिक जैसे अग्त ब लैस दैन ओर इक्वल टू जैसे आ लेस दैन एरो इक्वल ब ग्रेटर दैन ओर इक्वल टू जैसे आ ग्रेटर दैन एरो इक्वल ब कम्बाइंड कम्पैरिज़न जैसे आ लेस दैन एरो इक्वल ग्रेटर दैन एरो ब अब इन ऑपरेटर्स का अभ्यास करते हैं
टर्मिनल पर जाएँ
आईआरबी कंसोल क्लियर करने के लिए एकसाथ Ctrl ल कीज़ दबाएं
अब इक्वल टो ऑपरेटर का अभ्यास करें
इसलिए टाइप करें 10 10 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
eql
ऑपरेटर इक्वल टो ऑपरेटर के सामान ही है
इसका अभ्यास करें
अब टाइप करें 10 eql10 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
अब नोट इक्वल टो ऑपरेटर का अभ्यास करें
टाइप करें 10 नोट इक्वल 10 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट फलसे मिलता है
यह इसलिए क्योंकि दो नम्बर्स बराबर हैं
आईआरबी कंसोल क्लियर करने के लिए एकसाथ Ctrl ल कीज़ दबाएं
अब लेस थान ऑपरेटर का अभ्यास करें
टाइप करें 10 लेस थान 5 और एंटर दबाएं
यहाँ अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से लेस है तो ये ट्रू आएगा
नहीं तो ये फलसे आएगा
हमें आउटपुट फलसे मिलता है क्योंकि 10 5 से छोटा नहीं है
अब हम ग्रेटर थान ऑपरेटर का अभ्यास करते हैं
टाइप करें 5 ग्रेटर थान 2 यहाँ अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से बड़ा है तो ये ट्रू आएगा
नहीं तो ये फलसे आएगा
एंटर दबाएं
इस स्थिति में हमें आउटपुट ट्रू मिलता है क्योंकि 5 निश्चित ही 2 से बड़ा है
आईआरबी कंसोल को क्लियर करने के लिए एकसाथ Ctrl ल दबाएं
अब हम लेस थान इक्वल टो ऑपरेटर का अभ्यास करेंगे
टाइप करें 12 लेस दैन इक्वल 12 और एंटर दबाएं
यहाँ अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से छोटा है तो ये ट्रू आएगा
नहीं तो ये फलसे आएगा
हमें आउटपुट ट्रू की तरह मिलता है क्योंकि 12 बराबर है 12 के
इसी तरह आप ग्रेटर थान ओर इक्वल टो ऑपरेटर का अभ्यास कर सकते हैं
अब कम्बाइन्ड कम्पैरिजन ऑपरेटर का अभ्यास करें
कम्बाइन्ड कम्पैरिजन ऑपरेटर अगर पहला ऑपरेंड दूसरे के बराबर है तो 0 आता है
अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से बड़ा है तो 1 आता है और
अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से छोटा है तो 1 आता है
उदाहरण से समझें कि ये कैसे काम करता है
टाइप करें 3 लेस दैन इक्वल्स ग्रेटर दैन 3 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट 0 मिलता है
क्योंकि दोनों ऑपरैंड्स बराबर हैं जैसे दोनों थ्री हैं
अब किसी एक ऑपरेंड को 4 से बदलते हैं
टाइप करें4 लेस दैन इक्वल्स ग्रेटर दैन 3 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट 1 की तरह मिलता है
चूँकि 43 से ग्रेटर है
अब इस उदाहरण को फिर से बदलें
टाइप करें 4 लेस दैन इक्वल्स ग्रेटर दैन 7 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट 1 मिलता है
चूँकि 47 से लेस है
नियत कार्य के रूप में निम्न उदाहरणों को आईआरबी से हल करें और आउटपुट जाँचें
10 ब्रैकेट 2 ऐस्ट्रिस्क 5 ब्रैकेट 8 स्लैश 2 4 ऐस्ट्रिस्क 5 स्लैश 2 प्लस 7 मेथड्स उपयोग करके अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स का अभ्यास करें
इसके साथ हम इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
इसको सरांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस ऐस्ट्रिस्क स्लैश जो दर्शाते हैं ऐडीशन सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन डिवीज़न
ऑपरेटर प्रेसिडेन्स
रिलेशनल ऑपरेटर्स
कई उदाहरणों का उपयोग करके
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सरांशित करता है
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलाती है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद